ऊपर पहाडों के ऊपर खड़े हुए हैं और कुछ लोग चढ़ रहे हैं और उसके बगल में एक हरा पेड़ पेड़ दिख रहा है और बदल नीले हैं।

खिड़कियां लगी हुयी है और ऊपर लाइट लगी हुयी है जिसमे एक लड़का जो सामने चौखट का पोताई कर रहा है एक लड़का जो सीढी ऊपर बैठा हुआ है एक लड़का पकड़ा हुआ है।

एक बड़ा सा रूम है जो अगल- बगल दीवारे हैं खिड़कियाँ लगी हुई है और ऊपर लाइट लगी हुई है पंखे लगे हुए है एक लड़का जो सामने खड़ा हुआ--

एक जो रूम है रूम में अगल बगल दीवारे है ऊपर लाइट लगी हुई है और निचे पर्दों का दुकान है जिसमे पूरा स्टैंडो में पर्दों परदे रखे हुए हैं।